झाड़ फुस और झाड़ी बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर लोगो ने दुकान खोल रखी है सुबह शाम दोपहर सभी मछलिया लेने के लिए आते रहते है।

थैली है जिन्हे यहाँ रखे हुए है ।

घर है जहाँ पर बड़े-बड़े पेड़ नज़र आ रही है हरा-भरा घर है।

एक पुराने ज़माने की मूर्ति है जहाँ एक मंदिर के अंदर के से --

एक रेलिंग लगा रखी है रेलिंग के अंदर किसी को जाने की अनुमति नहीं है।